ये एम_पी का है ये यहाँ पे डांस शो चल रहा है।

लगभग सिल्वल कलल में है हमको तो लग रहा है कि सब एक ही मछलियां --

ए एक जिम है। यहाँ पे हम लोग जाके जिम करके अपनी बॉडी बनाते हैं। भिन्न-भिन्न प्रकार के एक्सरसाइज करते हैं।

लेकिन है बहुत ही अच्छी और विशाल यहां पे --